पास में एक खेत भी दिख रहा है जिसमें कुछ घास भी लगी हुई दिख रही है।

एक कमरा भी बना हुआ दिख रहा है और कुछ ठेले भी लगे हुए हैं।

कुछ बैलून भी रखे हुए दिख रहे हैं एक टैडी भी रखा हुआ दिख रहा है।

ए फोटो एक रेलवे स्टेशन की देख रही है जिसमें एक ओवर ब्रिज दिख रहा है।

और इस तालाब में कुछ पक्षी बैठे हुए दिख रहे हैं।

अंदर कुछ लाइटें भी जलती हुई दिख रही है ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ दिख रहा है।